एक घर भी दिखाई दे रही है लाल झंडा भी दिखाई दे रहा है।

गाजर भी दिखाई दे रहा है दुबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आदमी दिखाई दे रहे हैं तराजू भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे गाड़ियां दिखाई दे रही है यहां पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर खाना खजाना ढाबा रेस्टोरेंट दिख रहा है।

घर भी दिखाई दे रहे हैं दो नाद भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रही हैं यहां पर एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

पानी जमा हुआ भी दिखाई दे रहा है।